यहाँ चा--बोहोत सारा वॉइसीग है निचे में टाइल्स लगा हुआ है.

एक दुर्गा फोरेन यूनिवर्सिटी है.

एक सुंदर सा नदी है.

एक बड़ा सा हाल है जिसमें तीन बेड है।

और ऊपर मे एक पंखा हे इसमें पांच छे लाइट लगा हुआ हे.

जिसमे से ए जिसमे एक दुल्हा बैठा हुआ है।

और दो आदमी खड़ा हुआ है।

और एक बहुत बड़ा सा गेट है।

यह एक लखीचंद दुकान है.

और और बोहोत बड़ा सा सीसा हे.

एक वरमाला हो रहा है जिसमे से एक वरमाला कुर्सी है.

जिसमे एक भीम यु_पी_आई का स्कैनर लगा हुआ है.

यह सात लेडिस खड़ी हुई है।

जिसमें से एक लेडीज कुर्सी पर बेटी हुई है।

बहोत सारे कोल्ड ड्रिंक बाहर में है.